हयी एगो पार्क है यहाँ पर ये पानी का फुहारा से पानी पटावल जाता इ सब एक अलग तरह का ऐथी है--

यहां पे पेट्रोल डीजल सब कुछ गाड़ी में पेट्रोल भरावाता आदमी डीजल भरावाता यहां--

टेम्पो लागल भी हेय बाइको जाता आवाता हेय सब पूरा भीड़ भाड़ पेट्रोल पम्प पर हेय बड़का --

पूरा भीड़ रहे पूरा एकदम इतना भीड़ की का कही इतना भीड़ बा --

इ बहोत बड़ा बिल्डिंग हेय जोने पर कुछ लिखल बा समझ मे नयखे आवत लेकिन लगा ता अ कोनो होटल होय चाहे फ्लेट उलेट बा।